एक स्कूल है यह स्कूल का एक कमरा है जिसमें बहुत सारी पढ़ने वाली कुर्सियां लगाई गई है|

इस कमरे में दो खिड़कियां हैं और एक नीले रंग का नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर बहोत सारी सूचनाए --

इस पहाड़ के नीचे लोग खड़े होकर फोटो भी ले रहे है।